और एक हाथ भी नजर आ रहा--

और यहां पे नीचे राष्ट्रीय झंडे भी दिखाई दे रहे --

यहां पे बहुत सारी मोटरसाइकिले दिखाई दे रही है और एक बैंक भी दिखाई दे रही है।

और ये सुखदेव प्लेस पैलेस के नाम से ये नाम जाना जाता है और इसे बहोत शानदार तरीके से सजाया हुआ है।

और एक सेल भी दिखाई दे रहा है।

और दो बोतल भी दिखाई दे रही है और यहां पे पत्ते भी दिखाई दे रहे --

और एक कच्छा भी पहन रखा है और नीचे बहोत सारा कचरा भी दिखाई दे रहा है।